और साइड में ये दो लड़का दिखाई दे रहा है। एक के--

स्पून रखा हुआ है नीचे में और साइड में एक ग्लास है।

पर मे बहुत सारा सामान दिखाई दे रहे--

साइड साइड में कृष्ण का मूर्ति लगाया हुआ है।

लड़का साइकिल के सामने खड़ा हुआ है।

एक मूर्ति से बनाया हुआ आदमी लोग है जो पेड़ का नीचे में है आधा लोग।

और वहां बहुत सारा आदमी है हेलीकॉप्टर रुका हुआ हैं।

बीर बार दिखाई दे रहा है दो लाइन में।

हमें ऊपर में एक सनसेट का व्यू सुंदर से आ रहा है।

एक आदमी जो नीचे में खड़ा होकर देख रहे--

ब्राउन शिशा टेबल और उसका ऊपर टिशू पेपर है।

ठेला का ऊपर बस्ता रखा हुआ है।

और एक आदमी साइड में बैठ रहा है।

साइड में चेयर दिखाई दे रहे और पीछे में अरना में कपड़ा सब टांगा है।